और एक बिजली का खम्बा भी दिखाई दे रहा है।

दो जानवर भी दिखाई दे रहे है।

एक ब्रेंच रखी हुए हैं।

ये कस्तूरबा गाँधी बालिका विश्व विद्यालय--